यहाँ कुर्सी भी लगा हुआ है जिसपे की आदमी बैठ सकता है और ये रास्ता है गोडाउन से जाने का।

यह देख के ऐसा लगता है की यहाँ पे कोई बिल्डिंग या घर था जिसे की तोरा गया है।

यह यहाँ की मास्टरनी है जो की सबको काम करना सिखाती है ।